ये गाड़ियों की दुकान नजर आ रही है।

सामने एक खिड़की दिख रही है सामने एक लाइट है पंखा लगा हुआ है।

पेप्सी की बोतल छपी हुई है।

और ये बराबर में दो स्टैंड ह--

औरत है और कुछ पेड़ पौधे दिख रहे है।

और बिल्डिंग पर ब्लैक कलर हो रहा है वाइट कलर की पट्टी है।

एक सिलाई सेंटर नजर आ रहा है।

सेंटर के अंदर पिंक कलर का कलर हो रहा है।

अ क एक फूल बना हुआ है।

व्हाइट कलर की पट्टी है और रैड कलर की पट्टी है।

इसमें कुछ दरवाजे हैं और कुछ खिड़कियां हैं और कुछ एक बाइक और एक्टिवा खड़ी है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं कुछ तार दिख रहे हैं।

और पानी कि लहरें नजर आ रही हैं।

बहोत बड़ा मंदिर है इसमें कुछ मीनारें हैं।

अह अह कश्ती लकड़ी की है।

और कुछ स्टूल चेयर्स नजर आ रही हैं।

कुछ बच्चे खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए है।